एक रोड दिखाई दे रहा है जिस पे एक प्रेवश द्वार दिख-दिखाई दे रहा है| उसपे नालंदा मेडिकल कोलेज पटना ट्वेंटी सिक्स लिखा दिखाई दे रहा है| प्रेवश द्वार मेहरून कलर का दिखाई दे रहा है।

ओर चार तिरंगा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सारे फूलों की लड़ियों से सजे हुए दुकान दिखाई दे रही है| इस पर बाहर बेग टंगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमे बहुत सारे फूल लगे हुए स्टेज पे एक कुर्सी भी रखी दिखाई दे रही ऊपर हॉल में भी बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है हॉल सफेद कलर का दिखाई दे रहा है।